डेकोरेशन भी बहुत सुंदर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक --

पास में टावर भी है ऊपर में बोर्ड भी क्या लगा हुआ--

और उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है मौलबी एक आदमी के साथ बात कर रहा है कुछ बहोत सुंदर लग रहा--

बहोत बड़ा चर्च है यहां पे बहोत सुंदर भी लग रहा है।

और बगल साइड में दो पिक्चर भी है एक तरफ लड़का की एक तरफ लड़की बच्चे की और नीचे देखो कितने सारे कपड़े फैंसी कपड़े टंगे हुए हैं यहां पे कोई--

ये ग्रीन कलर का टेबुल है पडा कुछ खेल रहे हैं सब।

यह घर भी है सब कुछ है यहां पे आदमी लोग बहोत बैठे हुए हैं।

शॉप में भी बहुत भीड़ तीन चार दुकानों में भीड़ लगी हुई--

ये डिजाइंस है वो भी बहुत ही सुंदर नीचे का फ्लोर भी बहुत साफ सुथरा लग रहा है या--

और वह क्या-क्या वो दे रहा है येलो कलर का चार्ट है येलो रेड --

बहुत अच्छा खाना मिलता होगा फास्ट फूड इसलिए--

रास्ते के बीच में कोई हाईवे के पास लगता हरिदास फूड --

और वे जज लोग बैठते हैं ना मेन मेन बड़े बड़े आदमी लोग ऊपर बैठते हैं।

बोल रहीं किस लिए प्रोग्राम हो रहा हैं क्या हैं?